एक छोटा बच्चा पाइप के पानी से उन्हें--

जहां पे दुकाने और लोग बैठे हुए कई चल रहे है सामने एक--

आलीशान भव्य भवन दिखाई दे रहा है जहां पे सामने चार गाड़ियां रोड --

यहां पर यात्री अपनी अपनी बस का इंतजार करते है।

वह लगी है। साथ में एक और कुर्सी भी है।

सोफे लगे हुए है और साइड में शीशे की बनी

यह मुझे एक ढाबा दिखाई दे रहा है।

बच्चों के बीच निकलता हुआ पानी--

विशालकाय भवन है बीच में सीडीयां है सीढ़ियोंके के दोनों तरफ गमले रखे गए हैं।

इस दृश्य को देखकर लग रहा है की यह--

सजावट शादियों की तरह की गई है।